और ये बहुत अच्छा कार्य है।

प्लेट नम्बर लगी हे के हर माल पंद्रह रुपे में मिलता हे कोई सी भी चीज हे लेने के लिए पंद्रह रुपए का मिलता है।

और पार्क का एन्जॉय लेते हैं।

देवी देवताओं को बहुत ही सुन्दर रूप से इसमें पुष्प फूल माला अर्पण करके बहुत ही सुन्दर बनाया गया --

खाने के लिये कुछ रखा गया है। जिसमे दो चम्मच रखे हैं।

जिसमे अनेक प्रकार की कॉपी किताबे पेन पेंसल --